ओ टी_वी भी लगा है टी_वी के नीचे सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है--

यहां पर बस भी खड़ी हुई है और यहां पर बहोत सारे लोग भी खड़े हैं बस पर चढ़ने के लिए--

एक सैलून दिखाइ दे रहा सलूल का सलून का नाम हेयर पेंटर है और यह चंडीगढ़ के सेक्टर --

यहां पर शेरा वाली माता भी है।

और ये ये एक पत्थर को इनको हाथ लगा रहा है।

लगा हुआ है और इस गुरुद्वारे में बहुत सफाई है।

और यहां पर बहोत सारे लोग भी खड़े हुए हैं जो की अंदर को देख रहे हैं ये बहोत बड़ा ढाबा है और यहां पर बहोत सफाई हैं।

और सामान ले रहे हैं यहां यहां पर बहोत सफाई भी है।

तो छोटी सी सड़क है और सामने की ओर कुछ लोग भी दिखाई--

यहां पर बहुत सारे आठ से नौ दस--

बैंक का नाम अलहाबाद बैंक है अलहाबाद बैंक के --

गुरुद्वारे के मेन गेट पर लाइटिंग से बहोत अच्छी डेकोरेशन की गयी है ये बहोत अच्छा दिखाई दे रहा--

स्कूल भी बहोत अच्छा है ये स्कूल बहोत बड़ा है।

इस पेट्रोल पंप पर बहोत ज्यादा भीड़ है और सफाई भी है।

इस तस्वीर में हमें एक लौंडी दिखाई दे रही है यहां पर--